एक दुकान है यहाँ पे बहुत सारी समान दिखाई दे रहें हैं गुड़िया भी है।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

गाड़ी भी दिखाई दे रहा है यहां पे सामने बहोत गड़ा घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी है और सीमिट सान रहे हैं जो की रोड बनाने के लिए और काफी सारे पेड़ पौधे हैं और फूल भी है जो काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में--